दिख रहे है सामने एक बच्चे गोल ब्लैक कलर के टायर में तेर रही है और पीछे--

ब्लैक कलर का फर्श है और इस्पे छोली चप्पी हुई है अंदर--

लाल है जिसमे सफ़ेद कलर से फोसट पेड लिखा हुआ है और अंदर कुछ अद --

मोटी मोटी बुके रखी हुई हैं और आदमी रंगीन टी शर्ट पहने हुए है नीले कलर का।

सामने ए दुकान है जिसमे बहार टेबिल लगी है जिसमे बहत सारी मोटी मोटी--

कटरे जिसमे एक में नील कलर का पोस्टर है जिसमे सफेद कलर से प्रगति बुक सेंटर हिंदी और इंग्लिश में --

सामने एक बेड दिख रहा है जो चॉकलेटी कलर का है जिसके साइड में दो रैक बने हुए हैं और दोनों साइड सफ़ेद--

ब्लैक एंड वाइट और सभी र ब्लैक एंड वाइट और कुछ रंगीन दिख रहे है और--

खंभे लगे हुए हैं जिनमें ऊपर बहोत सारे तार दिख रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट है ऊपर आसमान भी ब्लैक --

सामने एक बड़ी मस जे_सी_बी मशीन दिख रही है जो पीले कलर की है और काच के--

चारों ओर वाटर ब्लैक कलर की है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

कलर के है और नीचे पीले कलर की मिट्टी है और बहोत सारे पेड़ दिख रहे है जिनमे नीचे लाल और उपर सफेद कलर पुता हुआ है और --

उपर नीला आसमान दिख रहा है कुछ साइकले खड़ी हुई है और साइड में एक घर--

छोटे-छोटे पाइप गड़े हुए है जो लाल और ग्रीन कलर की है और सामने एक बड़ा सा घर है जो--

ये सिलेटी कलर की है और ऊपर बहुत सारी फोटो लगी हुई हैं जो अलग अलग कलर की हैं और साइड में एक--

सामने लाइन से बहोत सारी टेबल लगी हुई है जिनके पीछे बहोत से बच्चे बेठे हुए है कुछ खडे हुए है और टेबलों पर बड़े बड़े --

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो क्रीम और पीले कलर की है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां और बालकनी बनी हुई हैं जो खिड़कियां सफेद--

सामने के हॉल है जिसमें दो काले कलर के सोफे डले हैं एक सोफे पे ए बहुत सारे गुब्बारे हैं जो पी अ नीले--

वाले गुब्बारे है और नीचे हैप्पी बर्थडे लिखा है और साइड में टू बना हुआ है और --

बड़ा पेड़ लगा हुआ है दोनों साइड बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं पत्थर दिख रहे हैं और पीछे बहुत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद और--

चॉकलेटी कलर की कुर्सियाँ रखी हुई हैं और साइड में खिड़की बनी हुई है ऊपर दीवाल सफ़ेद कलर की है जिसमें एक काला--

गली है और पीछे कुछ बड़े पोस्टर लगे हुए है और बहत सरे पेड़े दिख रहे है पेड़ो के पीछे एक --

बहत से पंछी दिखाई दे रहे है सामने एक आदमी दिख रहा है जो नीला कैप --

सामने तीन है। जिप खड़ी हुई है जो काले कलर की है। जिनमें पीले कलर की और--

ललाल कलर की लाइट लगी हुई है और सु पीछे कुछ सफ़ेद कर दिख रही है और पीछे --

यह एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद है इनके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें जीप छपी हुई है।

सामने एक जे_सी_बी दिख रही है जो पीले कलर की है जिसमें सफेद कलर से जे_सी_बी लिखा हुआ है और नीचे--

बहोत सारा पानी और पिली मिट्टी और पत्थर दिख रहे है साइड में एक पाइप है कुछ आदमी खडे हुए जिस मे है और सामने--

बहुत सारे पाइप के मुंह दिख रहे हैं साइड में एक ट्राली दिख रही है जो पीले कलर की है और इसमें अन्दर दो आदमी--

सामने एक लोहे की जाली रखी है जिसपे तीन ऊपर बाल्टी और तीन नीचे लटकी हुई है जो लाल कलर की है और सफेद कलर से--

बेठा हुआ है कार दिख रही है और कुछ मोटरसाईकिल और दिख रही है।

ऊपर सफ़ेद ए आसमान दिख रहा है और पीछे बहत से पेड़ो के घ--

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीली जरकन पहने हुए है नीचे छत का फर्श डल रहा है और बहुत सारी--

खड़े लगी हुई है और बेठे हुए है जो नीली कलर की--

केप लगाये हुए है और पीछे पूरा धुँआ धुँआ दिख रहा है और बहोत से खम्भे दिखाई दे रहे है और कुछ छाव दिख रही है।

पिंक और नीले कलर की परदे की झालर बनी हुई है और दोनों साइड गमले के--

टेम्पल बना है जिसके अन्दर मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं बाहर एक लाल और सफ़ेद फूलों वाली कालीन बिछी हुई है।

और एक पाणी की बोटल रखी हुई है दो चाय के मग रखे हुए है और दो आ लड़के बेठे हुए है इनके साइड में दीवार--

चोकलेटी कलर की है और एक चोकलेटी कलर का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस--

ये मशीन के यहाँ पे खड़े हुए हैं और पीछे दूर कुछ बिल्डिगें दिख रही हैं ऊपर सफ़ेद नीला आसमान दिख रहा है और बहुत--

तो अन्दर सफेद कलर का और वो वहा पीले कलर का दिख रहा है और उपर चोटी बनी हुई है एक लाइट लग--

सामने बड़ी बुल्डिंग दिख रही है जिसमे बड़े बड़े काच लगे हुए है और साइड एक उपर पोस्टर है जो उसमे--

सामने एक दीवाल है जिस पर एक बड़ा पोस्टर हुआ है जिसमे तहसील दार स्टूडियो फॉर --

सामने एक खम्बा दिख रहा है जिसपे पीला नीला पोस्टर लगा हुआ है जिसपे--

कलर का है जिसके ऊपर भी पोस्टर लगा है और साइड में दीवाल बनी है और कुछ खम्भे लगे हुए हैं और कुछ पड़ें दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान --

सामने एक बड़ा गेट लगा हुआ है जो लोह का लाल कलर का है और जिसके ऊपर--

अ बॉर्डर बनी है जिसपे कुछ लिखा हुआ है और ऊपर तीन लाइट लगी हैं और अ चार खम्भे बने हुए हैं जो क्रीम --

कलर के है और दोनों साइड दीवाल है जिसके ऊपर लोहे की जाली--

सामने एक बड़ा सा हॉल है जिसमें नीचे सफेद कलर है और दो काले कलर की पट्टी बनी हुई है और एक साइड बहोत सारी कुर्सियां--

सूखे पत्तों के ढेर लगे हुए हैं और कुछ हरे पत्ते भी हैं और कुछ दूर पेड़ बहोत सारे पे--

ऊपर नीली निचे बेठने वाली लाल कलर की है और के पीछे कुछ--